भागने वाली मशीने दिखाई पढ़ रही है कुछ कसरत करने वाली डोले शोले भी दिखाई पढ़ रही है यहाँ पे लाइट भी बहुत ज्यादा है ।

और यहाँ पे हरी हरी घास लगी हुई है | कुछ एंगल वगेरा भी लगे हुआ है । यहाँ पे बहोत टेंट --

यहाँ पर फेन वगेरा भी लगे हुए है | कुछ लाइट वगेरा भी लगी हुई है यहाँ पे साफ़ नजर आ रहा है । यहाँ पे बोतल वगेरा भी रखी हुई दिखाई पड़ रही है ।

'' ये घर है| घर के बाहर बोहोत अच्छा पार्क बना हुआ है| ये पार्क देखने में'''' सुंदर है| कुछ छोटे बड़े पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है और यहाँ पे एक दो लाइट --''

ये मंदिर है मंदिर देखने में बहोत अच्छा लग रहा है। बहोत सुदर भी है। यहाँ पे बहोत ज़्यदा उ सजावट भी बहोत ज़्यदा की गयी है। झूमर वगेरा भी टंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके चारों ओर से ऊपर से एंगल वगेरा भी लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

महन की तिथि वगेरा सब लिखी हुई है यहाँ पे एक खंम्बा है| खंम्बा देखने में बोहोत अच्छा लग रहा है| बोहोत बड़ा भी हैं पेड़ वगेरा भी बोहोत ज्यादा है और यहाँ पे जो कुछ छोटे बड़े पेड़ भी है और यहा पे सीढी वगैरह भी लगी है चारों ओर से।